और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

और दुकान में बहोत से स्टील के बर्तन रखे हुए हैं जैसे--

और रूम में पर्पल कलर का सोफा भी रखा हुआ है।

ये मुझे एक मिठाइयों की दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान में बहुत ही तरह-तरह की मिठाइयां रखी हुई हैं।

साइड में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं एक आदमी है जो खड़ा होकर देख रहा है।

आ आसपास बहोत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

और घर के सामने एक छोटा सा रोड है।

होटेल के सामने बहोत ही अच्छा अ--

कुछ लोग खड़े होकर देख रहे है बाहर एक फूलदान दिखाई दे रहा है।

में सफेद रंग और काले रंग से पेंट किया हुआ।

उनके सामने दो टेबल लगी हुई है। टेबल पर--

घर का रंग सफेद है ऊपर झूमर लगा हुआ है।

जिसमें एप्पल सेब मैंगो बनाना आदि रखा हुआ है।

एक लेडी है जिसने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ।

ये एक पार्क है पार्क में ग्रीन कलर का गे एक गेट लगा हुआ है।

कुछ बुक्स ऊपर लगे हुए हैं।

दुर्गा माता बहोत ही खूबसूरत सजी हुई है।

कुछ लोग हैं जो बैठकर खाना खा रहे हैं।

जहां बहुत अच्छी फूलों से और बहुत रंग-बिरंगे लाइटों से सजाया हुआ है।

कुछ चेयर टेबल्स रखे हुए हैं जिनका कलर व्हाइट एंड --

पास ही में कुछ अं शोपीसेज रखे--

और हरे रंग के कुछ पौधे भी रखे हुए हैं।

यह एक कैफे है कैफे के पास और भी छोटी-छोटी दुकानें दिखाई दे रही हैं।

ऊपर गुलाबी रंग का छत लगा हुआ है।